इसके बाहर दो गाड़ी लगी हुई हैं और बहुत सारे हरे हरे पेड़ लगे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह एक वॉशिंग मशीन और फ्रिज की दुकान है।

इसमें बहोत तरह के बिस्किट नजर आ रही हैं बहोत सारे प्रकार की क्रीम शैंपू --

यह एक खिलौना का दुकान है यहां बहुत सारे खिलौने--

दुकान के अंदर एक टेबल है।

इस गेट के अंदर एक लेडी खड़ी है।

यह एक पहाड़ है पहाड़ों के बीच में से।

यह एक पुरानी इमारतें है पहाड़ है।

कच्ची सड़के हैं ये रेड कलर का है।

ये बच्चों के हवाई जहाज--

ये सब नजर आ रहे हैं। पिंक कलर के उनके डब्बे हैं ब्लू वाइट में है।

यह एक घर है जो की अभी बन रहा हैं।